यहाँ पे पेंट किया गया है घर दिखाई दे रहा है ऊपर गेट दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक आदमी बैठे हुए हैं बहुत सारे फूकना सब दिखाई दे रहे हैं बहुत सारा पोस्टर सा लगा हुआ है जिस पर --

कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक पेड़ का पौधा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे सब पर्व कर रहा है छठी माता के बहुत सारे डालियाँ रखे हुए बहुत सारा अर्ग से दिखाई दे रहा है।

यह फुलबाड़ी दिखाई दे रहा है इसमें गंगा नरसिंह लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ऊपर से स पंडाल टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुर्गी फार्म दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे मुर्गी सब रखा हुआ है --

डाटी दिखाई दे रहा है मांस दिखाई दे रहा है।

ये डॉक्टर मनीष प्रकाश लिखा हुआ पोस्टर पे दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे घर दिखाई दे रहा है बाहर से पेंड किया गया वाइट कलर से --

और पेड़ दिखाई दे रहा है ऊपर भी पोस्टर लगा है आसमान दिखाई दे रहा है।